और ब्रिज के ऊपर जो रास्ता बना है वह खाली है रास्ते के साइड में वह आदमी खड़ा है आसमान में जो सूरज है वह ढलने वाला है और कलर थोड़ा ग्रे दिख रहा है।

यह जो पिक्चर है इसमें छोटा सा एक मंदिर दिखाई दे रहा है जैसा की वो पहाड़ के ऊपर में अ -है ऐसा लग रहा है देखने में साइड में जो एक बड़ा सा पत्थर भी है।

पिक्चर है जिसमें जो की एक जो नदी को दिखाया जा रहा है जहां पर बहुत सारा पानी है दिखाया जा रहा हैं। उसमें एक बोट को दिखाया जो जा रहा है यानी की एक तैरता हुआ नाव हैं।

पिक्चर के अंदर जो है वो बहुत ही एक सुंदर दृश्य को दिखाई जा रहा है।

पीछे जो है एक दो पेड़ है जो बड़ा पेड़ है और ये कार स्टैंड है।